इस चित्र में एक पहाड़ दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र में हमें गाड़ी दिखाई दे रही है। पेड़ नजर आ रहे हैं। आसमान में बादल है।

और केले दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है।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

यह एक टॉकीज है बैरीगेट दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं ऊपर लाइटें भी लगी है।

कुछ पेड़ों में फूल दिखाई दे रहे हैं।